यह ड्यूक है जो कि हम ही के बगल में है। यहाँ कपड़ा - वपड़ा है। और यहां दो पुतला खड़ा है यहाँ पर।

ड्यूक शोरूम यह ड्यूक का मॉल है जो कि ब्रांड है। इस में तीन-चार पुतले भी नजर आ रहे हैं। बगल में कार है और तीन-चार पुतले है। यह ड्यूक्स फारबिसगंज बिहार ही का लग रहा है।

जो की बहुत ही खुबसूरत तो नहीं बहुत ही बेकार भी नहीं थोडा-बहुत अच्छा है।